सामने में लिखा हुआ है छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत सोमपुर ये स्वागत अभीनंदन करती है लिखा हुआ है।

इस स्टाल में तंदूरी चिकेन छोला भटूरा मिलता है।

रहता है पेट्रोल से हम लोग गाड़ी में भरवाते है और अपना अपना यात्रा करते है।

बच्चा लोग बिच में गुल्ली डंडा क्रिकेट जैसा खेल-खेल रहा है।